पीछे एक बड़ा सा पलंग है जोकि काले रंग कहां और बॉर्डर पूरा सफेद है।

काफी नीचे मिट्टी है और बड़ा जगह है।

गेट है काले रंग का उनमें डिजाइन बनी है कई सारी डिजाइनों का रंग गोल्डन है।

दीवाल पर इट जैसा डिजाइन बना है।

अगल बगल बहुत सारे बड़े बड़े घर है।

दिन का समय है सभी जगह पे उजाला है।

ऊपर से तो ज्यादा पानी आ रहा है और साइड से कम कम--

कई सारे छोटे छोटे झाड़ियां हैं और कई सारे घास फूस जमे हैं।

नीचे बहोत सारे आदमियों का भीड़ है।

बहोत सारी खिड़कियां है जिनमें सीसा लगा है नीले रंग का।

बहोत सारे बेंच और डेस्क रखे हुए हैं।

बेंच का रंग काला है और ऊपर से लकड़ी लगा है।

इसमें ऊपर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और उसका रंग पूरा लाल है।

नीचे एक माउस पैड भी है पीछे एक स्पीकर भी है।

सामने काफी सारे आदमी लोग हैं।

इन सभी के डिस्प्ले का रंग काला है।

इस फोटो में एक ट्रक है और ये एक फायर ब्रिगेड ट्रक है।

उसके बगल में भी एक छोटा फायर ब्रिगेड ट्रक है।

उपर से टीन का करकट लगा है जो नीले रंग का है।

इस फोटो में एक छोटा सा रस्सी बांधा हुआ है जिसमे बहोत सारे चीज टांगे हुए हैं।

पीछे कई सारे पेड़ हैं और एक घर है जिस जो कि ईंट से बना है।

इस फोटो में सामने बहुत ज्यादा सीढ़ी जैसा बना है।

सामने पिलर की ढलाई हो रही है उसके अगल बगल से सेंटरिंग लगा हुआ है जो की लकड़ी पर लगा होता है।

सामने एक बड़ा सा लकड़ी से बना काउंटर है जो की डार्क ब्राउन कलर का है।